पेड़ पौधे दिखेए नयीगल के पेड़ दिख रहे है सड़क भी दिख रही है इसमे पारक भी दिख रहा है एक खिड़की दिख रही गेट भी दिख रहा है मोटा सा --

और इसमे खिड़की दिख रही है गेट दिखा रहा है बड़ा स लोहे की पाइप भी दिख रहा है खंभा भी दिख रहा है बादल भी दिख रहा है तार भी दिख रहा है और इसमे गेट लोहे के गेट भी दिख रहा है और लोग भी दिख रहे हैं।

अ सड़क भी दिखाई दे टाइल्स दिखाई दे रही है लोहे की पाइप भी दिखाई दे रहा है बलेक वुड भी दिखाई दे रहा है और इसे गमला दिखाई दे रहा है उसमे पेड़-पेड़ लगा है।